इ यह इमेज संस्कार सुजुकी शोरूम का इमेज हैं।

इस इमेज में तीन आदमी और दो औरते नजर आ रही है दो लडकियाँ है और तीन आदमी हैं ।

बाहर ढेर सारी गाड़ी खड़ी है और एक बुल्लेरो खड़ा हैं ।